इसका गेट कांच का लगाया गया है और इसका झूमर पूरा हीरों से बनाया गया है।

इस तस्वीर के अंदर मुझे एक होटल दिखाई दे रही है जिस होटल का नाम पांच सितारा होटल नाम से प्रसिद्ध है और इसके बाहर --

पीले रंग का सूट पहना हुआ है और वह एक चीज की दुकान के पीछे की ओर खड़ी हुई है।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

तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा घर जिसकी आकृति गोल बनी हुई है वह घर नजर आ रहा है।

उस आदमी ने काले रंग का व नीले रंग का शर्ट पहना हुआ है।

का एक गार्डन बना हुआ है उसके चारों ओर हरियाली छाई हुई है।

इस तस्वीर में मुझे गांव का एक इलाका नजर आ रहा है गांव के अंदर काफी भीड़ जमी हुई है।

पेट्रोल पंप पर एक रूम भी है जो कि कर्मचारियों के लिए बनाया गया है।

और उनके ऊपर सोने की एक परक भी चढ़ी हुई है जो इन मूर्तियों को और ज्यादा सुंदर बना रही है।

बच्चे दिखाई दे रहे हैं और उन्हें उनका टीचर पढ़ा रहा है टीचर ने प्राय सफेद रंग के कपड़े पहने हुए है।

इस तस्वीर में मुझे एक बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग का रंग प्राय सफेद रंग का दिखाई दे रहा है।

बेड के ऊपर एक बेड शीट बिछाई गई है जो की लाल रंग की है और उसके ऊपर सफेद रंग के फूल बनाए गए हैं।

जिसके अंदर काफी सारी दुकानें बनी हुई है और काफी सारे लोगों का आना जाना भी लगा हुआ है।

जोकि एक घर पर चिपकाया गया है और घर के बाहर काफी भारी मात्रा में साधन की खड़े किए गए हैं जिनमें से अधिकतर --